ये एक सलोन का अंदर का चित्र है जहा पे चार ब्लैक कलर का विलचैर दिखाई दे रहा है।

एक इसका सामने कुछ आइना रखा है उस साइड में एक खंडर में एक ब्लैक कलर का सोफा रखा है उसके--

यहा पे कुछ पेड़ लगाने के लिए तोफ है वाइट कलर का।

यहा पे एक बड़ा सा ढाला है जो रोड ढला हुआ है इसके पास में एक ढलाई जगा है जहा पे गार्ड वाले --

यहाँ पे एक रूम के अन्दर एक आइना देखाई देरा है वो आइना में बड़ा सा वो आईने में दिखाई देरा है की कुछ लड़की लोग यहाँ--

यहां पे एक हाथ दिखाई दे रहा है हाथ के ऊपर एक कॉफी मग दिखाई दे रहा हैं जो रेड एंड व्हाइट कलर का कॉफी मग उसके अंदर कॉफी में भरा हुआ है।

पेड़ दिखाई दे रहा है।

और में इट सिमेट वाली देखी रोड देखी यापे कुछ ब्लाडिंग हट का पड़ हुआ है यहा पे एक आदमी--

अ सामान भरा हुआ है यहा पे एक गेट दिखाई देरा है बेडरूम के जाने के लिए उसका वाल पेंटिंग कर के रखा है।

यहा पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में कुछ दुकान वगेरा में है झा पे लिखा है।

अं एक बिल्डिंग का नाम है क्लासिक टावर यहां पे क्रोमल का शॉप है यहां पे होम क्रेडिट लिखा हुआ है।

ये एक बड़ा सा रोड दिखाई देरा है पक्का रोड है यहा पे पास में एक ब्लुड़ो गाड़ी जारा है यहाँ एक ऑटो खड़ा हुआ है।

एक आदमी हा एक सारी पेहेन के जारा है एक मेट कलर का सारी पेहेन कर बात कर रहा है।

यहा पे एक बड़ा सा बिल्डिंग में गेट में एक राउंड करके फुल देके बना हुआ है।

बना हुआ है यहा पर बहोत सारे टेबल चेयर रखा हुआ है जो टेबल चेयर वाइट और रेड कलर का कपूर देके मुड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक बेनकट हॉल का बड़ा सा लॉर्न है यहाँ पे कुछ टेबल चेयर रखा सजाके रखा हुआ है खाने के उनके बेटने के लिए--

अ साइड में टेबल में कुछ खाने का वगेरा सब रखा हुआ है।

ये एक दुकान के अंदर का चित्र है झा बहुत सारे पेकेट में बहुत सारा सामान है।

एक वें चल री है उसके सामने का भरा हुआ है।

और टेबल के ऊपर कुछ खत्ता वगैरह बुक्स डायरी वगैरा रखा हुआ हैं पेन रखा हुआ हैं।

पास में वाइट हाल में एक राधा कृष्ण का छोटा सा मूर्ति रखा हुआ है।

यहा पे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है राउंड करके लिखा है बोटानिकल गार्डन यह बोटानिकल गार्डन का गेट है उसके मध्य में दो पाकी बेठा है यहा पे--

यहा पे एक रूम के अंदर दो बड़ा बड़ा किंग साइड बेड रखा हुआ है लोहे का बेड है।

बाकिट लेके वाइट कलर का बाकिट लेके कुछ काम यहा पे रोड का साइड में वाइट कलर का--

इसके यहा पे मार्ट में कुछ पेड़ लगा हुआ है यहा पे दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है एक वाइट कलर का एक ग्रीन कलर का--

यहा पे एक माका मार्ट में एक मार्केट एरिया दिखाई दे रहा है यहा पे तिन आदमी यहा पे मछली बिक रहे है ओल्ड गोरी लेके यहा पे छोटा छोटा बड़ा बड़ा मछली लेके बेठा है।

वाइट कलर का ऑफिस है यहा पे रेड कलर का एक कुच्छ बॉक्स रखा हुआ है जो यहा का उसके निचे कुछ गास पेड़--

यहा पे एक मशीन हिल में पड़ा था एक गाड़ी टाइप का मशीन आया है यहा पे एक बंधा खड़ा हुआ है ब्लू कलर का टीसर्ट पहन रखा है।

सेंटर टेबल रखा उसमे कुच्छ सामान रखा हुआ है उसके सामने एक ब्लैक कलर का चेयर है।

और यहा पे बडा सा समुन्द्र दिखाई दे रहा है समुन्द्र का पानी आसमान का कलर का हुआ है।

यहा पे बड़ा सा नदी टाइप का पानी में भदा हुआ जगा दिखाई देरा जहा पे--